और उसमे एक बड़ी सी मूर्ति भी बनी हुई जो सफेद रंग की दिखाई दे रही है उसकी सीढ़ियाँ लाल रंग से बनी हुई है उसके पास मे दो और मूर्ति बनी दिखाई दे रही है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

किसी मंदिर का दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारे भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे हाथी की सूंड भी दिखाई दे रही है और उसके पीछे बड़ा स मुकुट भी दिखाई दे रहा है जो नीले रंग की कवर से लिपटी हुई दिख रही है जिसमे हाथी के बोहोत सारे हाथ दिख रहे है पीछे फूलों से बना बैकग्राउन्ड भी है।

पोल कम पे कुछ लाल कलर का पट्टा उसका गेट थोड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है इसपे कुछ सीढ़िया है जो सफेद सफेद दिख रही है।

फर्श भी बड़े चौकट के टाइप मे दिख रहे है उसपे कुछ हरियाली पत्तियां भी दिख रही है सफेद कलर का बादल भी दिखाई दे रहा है।

चित्र मे एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे हरे भरे घास दिखाई दे रही है उसमे एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो पत्थर का बना हुआ दिख रहा है उसका एक गेट दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का बना हुआ है इसकी बॉउन्ड्री भी लकड़ी की बनी हुई दिख रही है जो पीले रंग की दिखाई दे रही है।

चित्र में रात का दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर बिजली के खंबे पर एक लाइट दिख रही है जो सफेद रंग की रोशनी दे रही है पास मे में एक पेड़ है हरे रंग का बोहत सारा जिसमें काला-काला हरे रंग का बड़ा--

रोड दिख रहा है जिसमे बहुत सारे घर दिख रहे है जो लाल रंग के दिखाई दे रहे उस घर के पास मे भी कुछ लाइट जलती हुई दिख रही है जो बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रही है।

चित्र के अंदर हमें प्राकृतिक दृश्य नज़र आ रहा है जिसमे बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं जो काले रंग के दिख रहे हैं पत्थरों पर हरे--

इस लाल कलर के भवन के पास में फूलों की कल्यारी दिख रही है जो पीले लाल रंग के फूल वाले रंग के पेड़ पौधे भी दिख रहे है जिसमे काली झाड़ियां भी है।

बना हुआ झोंपड़ी दिख रही है पेड़ खजूर का दिख रहा है सामने क्रिसमस ट्री भी दिख रही है सामने बड़ा सारा खाली रोड पड़ा हुआ दिख रहा है और कुछ लाइटे भी खंबे पर लटकी हुई है।

पानी भी पडा हुआ दिख रहा है जिसके आसपास बहुत सारे काले रंग के पत्थर भी दिखाई दे रहे है बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं सामने पीले रंग के पत्थर भी दिखाई दे रहे है और यहा पर हमें सफेद रंग के बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

फूल भी नजर आ रहा है सामने एक रेलिंग दिख रही है जो स्टील की दिखाई--

इसके अंदर एक बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग लाल सफेद और यह बाउन्ड्री वॉल हमें लाल दिखे उसके ऊपर की और जालिया भी लगी है उसके पास में उसमे बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।